सामने की तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंगस बनी हुई है। इनके ऊपर कुछ पिंक और व्हाइट कलर का पैंट किया गया है। बहुत ही छोटी-छोटी सी खिड्किया नजर आ रही है। नीला आ--

जमीन के ऊपर टाईल्स लगे हुए है कुछ ऑरेंज और ब्लाक कलरके सामने की तरफ़ एक बड़ा सा पूल बना हुआ है यहाँ पर कुछ बच्चे है जो की मस्ती कर रहे है ऊपर से फुब्बारा बह रहा है।

सड़क है धूप बहुत तेज निकल रही है एक पेड़ की परछाई सड़क के ऊपर नजर आ रही है सामने की तरफ बड़ी -बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई है।

फूलों से डेकोरेशन किया गया है बहुतसारा समान रखा हुआ है टेबल के ऊपर काले रंग की बड़ी बड़ी कुर्सिया रखी हुयी है कुछ ब्युटी प्रोडक्टस रख --